जाली दिख रही हैं एक ने रेड कलर का कपड़ा पहना है एक ने हरे कलर की साड़ी पहनी हुई है व कई प्रकार की गाडियां दिख रही स्कूटी दिख रही टू व्हीलर दिख रही ।

ये एक द देविजी दिख रही है दुर्गाजी दिख रही जिसमे श सजावट हुई है उपर लाइट लगी है कनात लगी है बैलून लगे है ये बैलून है ऑरेंज कलर के वाईट कलर के।

ये एक कॉपी पुसतक की दुकान है जो बहुत सारी कॉपी रखी हुई है| लाल कलर ऑरेंज कलर हरा कलर पीला कलर और एक व्यक्ति बैठा हुआ है व्हाइट कलर का पैंट पहना हुआ है काले कलर की जर्सी पहनी है।